जो उसके पीछे आसमान है खुला आसमान --

पर ध्यान दे रहीये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं।

यह एक वॉटर पार्क है।

जो आसमानी कलर का शर्ट काला पैंट पहने हुए हैं।

यहाँ गार्डन देखने मे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे हरी-भरी घासे है।

बिस्कुट कलर का पैंट पहना हुआ है उसके पीछे लाल कलर का दिवाल हैं।

जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है वह काला कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है ।